यह आलू है उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है इसे एक टोकरे में रखा गया है और यह जस्ट निकाले हुए आलू दिख रहे हैं।

यहाँ नर्सरी टाइप दिख रहा है आजू-बाजू बहुत सारे पेड़-पोधे नजर अ रहे हैं छोटे-छोटे जिन्हे काली पन्नी में लगया गया है।

यहां एक फल भी नजर आ रहा रहा है जिसे एक व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है उसके पीछे बहुत सारे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे है।

और कॉफी का मिक्सर भी दिख रहा है और जहाँ ऐटी सेवेनटी लिखा हुआ है यहाँ बर्गर की भी पो फोटो दिख रही है।